और दोनों में शटर लगा हुआ है और सेंट्रल बैंक के बगल में बिल्डिंग भी है।

और छोटा-छोटा पत्थर है और पत्थर भी कलरफुल है और जो बेहद अच्छा लग रहा है देखने में।